नीचे दो टायर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे बाल्टी रखी हुई है जो जिसपे इंडिगो लिखा हुआ है।

ऊपर ब्लैक कलर के डब्बे हैं जिस पे इंडिगो ही लिखा हुआ है।

बगल में एक पेड़ नजर आ रहा है उसका कलर ग्रीन है।

यह फोटो एक पेट्रोल पंप का है।

दुकान के बगल में एक झंडा गड़ा हुआ दिख रहा है।

बगल में बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ा रैक दिख रहा है।

नीचे पेन लटके हुए दिख रहे हैं।

एक चेयर भी नजर आ रही है चेयर का कलर ब्राउन है।

पीछे एक बड़ा घर दिख रहा है घर का कलर ग्रीन है और भी घर दिख रहे हैं।

पीछे बड़े-बड़े नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं।

नीचे एक आदमी गेट के पास खड़ा है।

उसके बगल में लकड़ी पर कपड़ा पसारा हुआ दिख रहा है कपड़े में धागा निकला हुआ नजर आ रहा है।

वो पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सामने बहुत सारे आदमी कुर्सीयो पर बैठे हुए दिख रहे है।

पीछे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में बहोत सारी कार लगी हुई दिख रही है।

बहुत सारे लोग भी हैं।

बगल में डी_जे लगे हुए दिख रहे हैं और ऊपर लाइट लगी हुई है।

पीछे एक बड़ा पोस्टर लगा है।

एक कंप्यूटर भी है।

आदमी के पीछे एक स्टेचू बना हुआ दिख रहा है।

पीछे पेड़ बना हुआ फोटो में दिख रहा है।

यह फोटो एक लॉन्ड्री के फोटो है।

बगल में एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

बाइक पे हेलमेट रख लगे हुए हैं।